छोटा सा दृश्य दिहाई दे--

कीटिंग जैसा पार्क दिखाई दे रहा है जो बहोत--

सुंदर सी इमारत दिखाई दे--

तस्वीर दिखाई दे रही है।